ये को गोल - गोल बना रखा है इसमें कूद रहे है एक छोड़ के एक --

एक बड़ा सा मैदान है मैदान में लोग --

कुछ घूम रहे है--